हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर ऑरेंज कलर की हजारे की माला टंगी हुई है।

यहां पर ऊपर छत पर पिंक ब्लू और व्हाइट बलून और स्टार से डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर आदमी के बनियानों के डब्बे अंडरवियर के डब्बे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

तीन औरतें पीछे खड़ी हुई है दो औरतें बगल में बैठी आपस में कुछ बातचीत करती हुई नजर आ रही है।

ये किसी मंदिर के बाहर के फोटो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा हैं जोकि बहोत हि बड़ा बना --

जहां पर कुछ औरतें पानी में खड़ी होकर हाथ जोड़कर डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है।